कपड़े मिलाया करते है जैसे कि साड़ी लहंगा चुंदरी कुर्ती लेगिंस यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे साड़ी भी दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम शगुन है ।

यह देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होगी ।

जो कि खाना बना रहे है व्यंजन बना रहे है यहाँ पर गैस है थालियां है कुर्सी है और --

और सारे आदमी है मिलकर फिल्म देख रहे --

और यहाँ पर आदमी इसे लेने आए है इसके बगल में बहुत सी साई --

उधर एक फवारा भी है उसके अगल-बगल भी बहुत सारे पेड़-पौधे भी है और यहाँ ये फोटो घिंचवा रहे --

घर है वहा एक टिफ़िन भी है। उसके सामने एक बोतल भी है और नए वाले घर में कुछ कपडे भी वहां पे --

यह फोटो किसी फंक्शन का है जहाँ पर तीन महिलाये डांस कर कर रही हैं जहाँ पर ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है अ रेड कलर का कारपेंटर है ।

यहाँ पर पर्दे भी बहुत सारे हैं | यहाँ पर सब जिम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं |

का फोटो लग रहा है जो कि जाने का एंटर करने का डेकोरेट किया है यह बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है ।

कुर्सी लगी हुई है --

यहाँ बहुत सारे शैम्पू रखे हुए हैं साबुन रखे हुए हैं |

यहाँ चटनियाँ भी रखी है यहाँ ऊपर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं --

हाथ उठाये हुए हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं महिलाएं भी हैं यहाँ पर पुरुष भी हैं और इसके बगल में एक मंडप भी सजा --

यह इस स्कूल का फोटो लगा है जहाँ पर झूला लगा हुआ है। यहाँ पर एक बच्चा बोहोत ही ख़ुशी से झूला झूल रहा है और इसके बगल में पेड़ भी है और इसके --